वहां पे कोलगेट का ब्रश और आदमी खड़ा हैं पीला कलर का टी शर्ट पहन के ठी --

पीछे की ओर देखें तो वहां पे गुटका रखा हुआ है जो रजनीकांदा है।

और ठीक बाहर में दो आइसक्रीम के बड़े बड़े फ्रिज रखे हुए हैं।

आ सामने की और एक स्टेज है जिसमे काफी सारे फूल लगे हुए है पीले लाल कलर के उहपे एक व्यक्ति है जो --

जैसे कि हम देख पा रहे है यह दिन का समय है और ठीक हमें पीछे जो दिख रहा है एक पवन चक्‍की नजर आ रही है और आसमान अगर देखे तो वो बादल बादल है ।

और ऊहा सामने मैं देख रहे है रथ देख रहे है रथ रथ के ऊपर एक धोयजा है जिसमे काफी सारे ब्याक्ति उसके सामने --

तड़के छोटे छोटे मूर्तिया रखी हुई है और ईये सब एक कच के बॉक्स के अंदर मैं रखे हुए है जिसे आ--

और राधा मां कृष्‍ण जी को पकड़ी हुई हैं और नीचे में एक मोर है और ये जो पूरा जगह है ये पूरा रेड कलर का है और ठीक --

ब्लू बंडी वाइट शर्ट ब्लैक पैंट ब्लू शूज के बाहर खड़ा हुआ नजर आ रहा है।

स्कूटी लगी हुई है और बाइक लगे हुए हैं ठीक एक साइकिल लगा हुआ है झोपड़ी के बाहर में----

एक रेड कलर का घर और ठीक सामने की और एक बहुत सारे बहुत बड़े पेड़ नजर है ।

और आस-पास यहां बहुत सारे पेड़ है छोटे-छोटे पेड़ है और ठीक अगर हम आगे की ओर देखे तो वहां पे और एक बाइक हीरों होन्‍डा लगी हुई है ।

रियलमी की पोको की ल्यूमिनस की छोटी वाली बैटरी भी रखी हुई हैं।

और छोटे-छोटे आठ दस बारह बच्‍चे है यहां पे और ठीक वहां पे एक मेम है और एक सर है जो इन्‍हें डांस सिखा रही है ।

सामान मिल रहे हैं दुकान में अगर हम ध्यान से देखे तो कपड़ा साफ करने वाला साबुन मिल रही है जग मिल रहे हैं झाड़ुआ मिल रही --

अधिक अगर हम ध्यान से देखे तो दोनों को खुट्टा में जोड़ा गया है जोकि एक रस्सी से दोनों को बांधा गया और नीचे में कुछ तो बहुत सारे पुआल दिये गए उन्हें खाने के लिए।

जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहां दिन का समय हो रहा है और यहां पे आसमान साफ है और ठीक है हम अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक नदी का पानी है।

उसकी बहता हुआ आ रहा है जिससे कि हम चोट कहते हैं और ठीक है यहां पर पानी--

ठीक हम अपने राइट साइड में देखें तो वहां पे एक बिल्डिंग का काम चल रहा है जिसके सामने में एक तार का कॉयल रखा हुआ है ठीक अपने लेफ्ट साइड में देखे तो बाउंड्री वॉल के अंदर में --

कंस्ट्रक्शन की काम चल रहा है और ठीक है अगर ऊपर की ओर देखें तो वहां पे क्रेन लगा हुआ है जिससे पिलर का काम हो रहा है।

जैसे कि हम देख पा रहे हैं शाम का समय हो रहा है ठीक है अगर हम ध्यान से देखें तो हमें --

हर एक बिल्डिंग का टेरेस नजर आ रही है कंस्ट्रक्शन की जाम चलते हुए हमें नजर आ रही है टेरिस --

जैसे कि हम देख पा रहे हैं एक शाम का समय हो रहा है और ये पेट्रोल पंप है पेट्रोल पंप में टोटल चार जगह हैं ऊं ।

जैसे हम लोग जिसमें लो चढ़ के पानी के और नीचे उतर सकते हो ठीक है न हम पानी के अंदर देखे उस गोलाकार के नीचे वहां पे दो चार व्‍यक्ति हमें खड़े हुए नजर आ रहे हैं ।

ये लोग डिवाइड कर रहा उसके सामने में दिखे तो काफी बड़े एरिया में नदी और फिर अगर एक जगह पे देखे तो हमें कबूतर नजर आ रहा--

और बहुत सारे पूजा करने की सामग्री रखी हुई नजर आ रही है।